तीन औरते नाचती हुई दिखाई दे रही है।

प्लास्टिक का बड़ा-बड़ा सफ़ेद कलर का डब्बा भी दिखाई दे रहा है लाल डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे ढेर सारा घर भी दिखाई दे रहा है। सड़क भी दिखाई दे रहा है। आदमी भी दिखाई दे रहा है।

ढ़ेर सारी बाइक दिखाई दे रही है। चार चक्का गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

एक सुन्दर सा बड़ा-सा दिवार भी दिखाई दे रहा है।

और रेत भी दिखाई दे रहा है आदमी भी दिखाई दे रहा है पेड़ भी दिखाई दे रहा है।